पाँच छै आदमी भी खड़े हैं और उधर सामान भी बिक रहें हैं।

दो मंजिल बिल्डिंग है और बहुत ग्रिल --